अंदर एक बेड लगा हुआ है जिसका लकड़ी का है और उसके आगे एक वेटिंग मेंटिंग बिछाया हुआ है।

यह फोटो के अंदर एक पीले कलर का दीवार है जिसके आगे एक खंभा है और लकड़ी का --

बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है जिसमें कि लाल कलर का पेंट किया हुआ है थोड़ा सा।

इंडिया जन ऐसे कुछ पोस्टर लगा हुआ है और उसके आगे दो मोटरसाइकिल --

और उसके आगे भी दो दो तीन तीन चार पांच मोटरसाइकिल खड़ा है और उसका गेट कांच का है और दो पो --

इस चित्र के अंदर एक लाल कलर का--